उस पे आटा दिख रहा है सामने पे नीचे पे --

उसके आगे में ऑटो दिखाई दे रहे हैं।

फिर उसके पीछे में और एक घर दिखाई दे रहे हैं ।

सामने से ते बड़ा सा घर दिखाई दे रहे हैं जिसमें बैनर दिख रहे है हाथी दिख रहे है भालू दिख रहे है।

सामने पे हाइड्रा दिखाई दे रहे हैं।

सामने पे एक सोने वाले दिख रहे चौकी उसके बाद बेड दिख रहे है उसपे कई सारे --

फिर ऊपर में कुछ लिखे हुए ब्लू क् और व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ।

कई सारे डम्बल दिख रहे हैं फिर --

फिर उसके पीछे में कई सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ।

ये सामने पे कई सारे बोरे दिखाई दे रहे हैं जो सफेद ब्लू कलर के और पीले कलर के --

और आगे में ब्रश दिख रहे हैं।

तार दिखाई दे रहे हैं।

फिर दो तार दिखाई दे रहे हैं।

कई सारे आदमी दिख रहें हैं।

और उसके नीचे में कई सारे लाल अक्षरों से लिखे हुए दिख रहे हैं।

ने पे एक भाई दो तीन भाई दिखाई दे रहे हैं। शीशा दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल दिखाई दे रहे हैं ।

उसके बाद नीचे में दो-तीन डंबल रखे हुए कई सारे डंबल रखे हुए दिख रहे हैं।